मुझे ये दृश्य काफी सुंदर नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर--

जहां पर कपड़े सिलने के लिए जो मिलता है कपड़ा वह काफी संख्या में दिखाया गया है।

यहां पर बहोत सारे अलग अलग कलर के तोता नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

और इस दुकान में बहुत सारी कारे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जहां बहोत सारी गाड़ियां खुली हुईं हैं उनके पार्टस को देखा जा रहा है।

यह बहुत ही बड़ी और बहोत ही लंबी दुकान नजर आ रही है।

ऊपर से फूलों का बहुत बड़ा गोल-गोल स्ट्रक्चर बनाया है जो देखने में काफी सुंदर है।

यह स्ट्रक्चर काफी अच्छा और काफी सुंदर नजर आ रहा है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुए जैसा झरना हैं जहाँ से पानी गिर रहा है।

तितलियां बना कर चिपका रखी हैं जो काफी सुंदर नजर आ रही है।

यहां पर मुझे लगता है कि यहां दुकान गैस की है जो खाना बनाने के लिए उपयोग में लिया जाए।

यहां पर एक बहोत ही अच्छा और बहोत बड़ा नेचर का बना हुआ झरना नजर आ रहा--

जहां टेबल कुर्सी लगाई गयी है बैठने की जगह दिखाई दे रही।

और यहां पर मुझे लगता है कि मारुति हमारे देश की सबसे अच्छी कंपनी --

यहां पर जो सनसेट हो रहा है वह काफी अच्छा और बहोत बड़ा बहोत ही प्यारा दिख रहा--